libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
इनके द्वारा table कैसे बनाएँ
a views बनाकर और
b copy पद्धति का इस्तेमाल करके
अपनी library database में चलते हैं
बाएं panel में tables icon पर click करते हैं
दायें panel पर हम table बनाने के तीन तरीके देख सकते हैं
हम अभी create view विकल्प के साथ जाएँगे
इससे पहले views के बारे में सीखते हैं view क्या है
view table के समान है किन्तु यह data नहीं रखता है
यह query अभिव्यक्ति की तरह परिभाषित किया गया है जोकि केवल tables या database के अन्य views से data प्राप्त करता है
अत: जब देखते हैं इसमें table की तरह data की columns और rows होती हैं
सीमित पहुँच की अनुमति देने के लिए views का इस्तेमाल कर सकते हैं
या अंतनिर्हित table columns और table data की संरचना और नामों को छिपा सकता है
उदाहरणस्वरुप हम एक सरल व्यू बना सकते हैं जो library के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करेगा
और गोपनीयता रखने के लिए हम उनके phone numbers छोड़ सकते हैं
यहाँ अंतनिर्हित table members होगा
library database के अन्य उपयोगकर्ताओं को view में प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं किन्तु members table में नहीं
इस तरह से names केवल सदस्यों के names देख सकते हैं और उनके phone numbers नहीं
ठीक है मुख्य base window पर वापस चलते हैं और इस view को बनाते हैं
दायें panel पर create view पर click करते हैं
हम view design नामक एक नई window देखते हैं और एक पॉपअप window जो कहता है add tables
members पर click करते हैं
और पॉपअप window बंद करिये
अब हम view design window पर हैं
और name memberid और name fields पर double click करेंगे
id field को जोड़ना हमेशा लाभदायक है
क्योंकि यह हमें इस view को किसी और सम्बन्धित table से जोड़ने में मदद करता है उदाहरणस्वरुप booksissued table
हम functions मापदंड जोड़ सकते हैं और इसे जिस तरह भी हम चाहें क्रम में लगा सकते हैं
किन्तु अभी के लिए names member names को आरोही क्रम में लगाएँगे
इसके लिए sort row के अंदर name column में सबसे नीचे भाग के खाली cell पर click करते हैं
और फिर ascending पर click करते हैं
चलिए अपना पहला view सेव करते हैं
यहाँ इस view के लिए एक विवरणात्मक name type करते हैं: view: members name only
और ok button पर click करते हैं
अंतनिर्हित data देखने के लिए सबसे ऊपर edit menu पर click करते हैं
और फिर सबसे नीचे run query पर click करते हैं
और ऊपर हम एक नया भाग देखते हैं जो library के सभी सदस्यों को आरोहीक्रम में सूचीबद्ध करता है
ध्यान दीजिये कि हम कोई phone numbers नहीं देख रहे हैं
और यह हमारा सरल view है
हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार views को बना और उसको रूप we सकते हैं
अगले विषय पर जाने से पहले यहाँ एक नियत कार्य है
सदस्यों को जारी की हुई पुस्तकों का एक view बनाइए और केवल वह पुस्तक जोकि checked इन नहीं है
view में निम्न fields सम्मिलित करिये: book titles member names issue date और return date
view को name दीजिये view: list of books not checked in
ठीक है copy तरीके का इस्तेमाल करके tables बनाना सीखते हैं
यह tables बनाने का एक सरल तरीका है यदि हमें पता है कि table की संरचना काफी समान होने जा रही है
इसके लिए मानते हैं कि हमारी library के पास dvds और cds हैं
और हम इस data को media नामक एक नई table में संचय कर सकते हैं
एक cd या एक dvd के पास एक शीर्षक और एक प्रकाशितवर्ष हो सकता है उदाहरणस्वरुप
एक audio audio और एक video video में अंतर करने के लिए हम एक mediatype field प्रयुक्त करेंगे
अब चूँकि books table के पास करीबकरीब वही fields हैं हम books table को copypaste कर सकते हैं
और फिर प्रक्रिया में हम fields और table को फिर से name दे सकते हैं
हम देखेंगे कैसे
मुख्य base window में चलते हैं
यहाँ books table पर दायाँ click करते हैं
और हम copy विकल्प देखेंगे इस पर click करते हैं;
और फिर इस पर दायाँ click करते हैं
विभिन्न विकल्पों पर यहाँ ध्यान दीजिये यहाँ एक paste है और साथ ही यहाँ एक paste special भी है
हम copy और paste को एक विशिष्ट रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं
सम्भव रूप हैं formatted text html या एक डेटाबेस table
अतः हम यहाँ database table चुन सकते हैं
या हम दायें click menu से paste चुन सकते हैं
यह एक wizard खोलता है और इस window में
हम सबसे पहले table name के सामने media टाइप करके अपनी table को फिर से name देंगे
इन विकल्पों में हम definition और data पर click करेंगे
next button पर click करते हैं
अगली window में हम columns जोड़ेंगे
इस नमूने के लिए bookid title और publishyear चुनते हैं
अब हम बायीं तरफ की इन fields को चुनेंगे और इनको दायीं तरफ खिसकाने के लिए single arrow button का उपयोग करेंगे
और next button पर click करिये
अगली window में हम अपने columns देखते हैं
यहाँ fields को फिर से नाम दे सकते हैं और उनके data types बदल सकते हैं
हम bookid का नाम mediaid में बदलेंगे
और हम create button पर click करेंगे
मुख्य base window में यहाँ एक नई media table है
add table को बदलकर उसमें एक नई field mediatype जोड़ते हैं जो audio या video की सूचना रखेगा
हम अब table design window में हैं
यहाँ अंतिम column में mediatype दाखिल करते हैं
publishyear के नीचे cell पर click करते हैं
और field name के रूप में mediatype दाखिल करते हैं और फिर text या field type चुनते हैं
अब table design को सेव करते हैं और हमने कर लिया
ठीक है हमने अभी copy पद्धति का इस्तेमाल करके अपना media table बनाया
ठीक है यहाँ एक अन्य नियत कार्य है
use wizard to create table पद्धिति का इस्तेमाल करके एक table बनाइए
यहाँ assets sample table इस्तेमाल करिये और उसको फिर से नाम दीजिये assetscopy
और इस पद्धिति में विभिन्न विकल्पों का अन्वेषण करिये
इसी के साथ हम libreoffice base पर tables बनाने के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा की कैसे:
इनके द्वारा एक table बनाएँ